बैठे हैं और यहाँ पर बहोत--

जैसा कि आप देख सकते हैं।

और यहां पर बहुत सारे लोग आए हैं।

सकते हैं यहां पर--

और यहां पर बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई--

करते हैं यहां पर एक --

तो जैसा कि आप देख--

पेड़ लगे हुए हैं जहां से--

यहां पर बहुत सारे --

चल रही है जहां पर--